इस चित्र में एक जिम दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में सामने एक लड़का खड़ा तस्वीर खिंचवा रहा है--

इस चित्र में एक जेंट्स गारमेंट दिख रहा है सामने कुर्सियाँ रखी दिख रही हैं --

अह तरबूज आलू टमाटर रखे दिख रहे हैं।

सामने बहोत सारी गाड़ियां खड़ी हैं।

इस क्षेत्र में एक जद हार्दिक--

दिख रहा है मेला जैसा लगा है आसपास --

ये नीचे एक औरत जाती दिख रही है।

हरे भरे पेड़ रखे हुए हैं।

पीले रंग क्रीम रंग से रंगा हुआ है।

सामने की तरफ लोग नमाजे पढ़ते दिख रहे है।

नीचे चार नमाजें बिजी हुई।

पीछे लोग बैठ कर गा रहे हैं।

इस चित्र में एक बड़ा खेल का मैदान दिखाई दे रहा है।

इस चित्र मे एक घर बनता नज़र आ रहा है।

सामने की तरफ बहुत सारे लोग खड़े हैं।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

इस चित्र में भी एक बड़ा कॉलेज दिख रहा है बाहर की तरफ गाड़ियां खड़ी नजर आ रही हैं।

इस चित्र में एक बड़ा तालाब दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में एक मकान बनता दिख रहा है।

पेट्रोल डलता नजर आ रहा है।

लोग बहुत हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं।

गाड़ियां आती जाती देख --

एक मूर्ति लगी दिख रही है।

सामने बहोत सारी किताबें रखी हुई हैं।

इस चित्र में एक बड़ा खेत दिख रहा है।

हरे भरे पेड़ भी दिख रहे हैं।

छोटे-छोटे बच्चे रात सीख रहे हैं।

इस क्षेत्र में कलीता रेस्टोरेंट दिख रहा है--